कितना अच्छा कुर्सी चेयर लगा हुआ हैं बहुत मस्त लग रहा है देखने में एक दम सुन्दर लग रहा है देखने में।

यहाँ देखिए पुल नजर आ रहे हैं बहुत बढ़िया पुल है इतना सुंदर है की पूछिए मत बहुत बढ़िया पुल है ये पुल इतना अच्छा है यहाँ पानी दिख रहा है बहुत सुंदर पानी है बहुत मस्त है।

इतना मस्त है कि देखने लायक भी है कितना अच्छा है बहोत सुंदर है बहोत मस्त है बहोत झकास है देखने लायक इतना सुंदर है मत पूछिये बहोत मस्त लग रहा है देखने में बहोत सुन्दर लग रहा है।

इतना सुंदर लग रहा है कि आपलोग भी देख सकते है ये घर बनाने वाले ढाल रखे है आ इ ढालल है कुछ भी है ढालल है।

यहां पे पूरा एकदम अच्छा लग रहा है देखने लायक लग रहा है कि हां है कुछ देखने लायक इतना सुंदर है कि मस्त --

चटनी भी इधर रखा हुआ है देखो ना ये कितना सुंदर चटनी रखा हुआ है कितना सुंदर लग रहा है बताओ न यार बहुत अच्छा है वाह।

टेंपो नजर आ रहा है इसमें बहोत अच्छा-सा टेंपु नजर आ रहा है।

इतना सुन्दर है की मैंने अपने लाइफ में ऐसा देखा नहीं था लेकिन देखने को मील रहा है एक से एक चीज़ है यहाँ सुंदर-सुंदर चीज़ है।

एक से एक कुर्सी है एक से एक टेबल है यहाँ पे देखने लायक है बहोत सुंदर है।

यहाँ पर कॉफी पी रहे हैं भैया लोग देखिए कितना मस्त कॉफी पी रहे हैं कितना अच्छा काफी है वाह क्या गिलास है कॉफी का --

यहां पर देखिए हरा-हरा पूरा पौधा जैसा है पूरा हरा-हरा दिख रहा है बहुत अच्छा दिख रहा है हरा-हरा।